यहाँ कुछ अन न हाथ जोड़े हुए सेन है आ सेनापतिओ के अ स्टेच्यु बने हुए हैं |

यहाँ पर किसी की शादी का फंक्शन चल रहा है तो एक स्टेज तैयार किया हुआ है और स्टेज को कुछ फ्लावर्स के द्वारा डेकोरेट --

यहाँ पर एक अ केफे है और जिसमे कुछ लाईट लैम्प लगे हुए है। जो की एक रिंग है दो तीन रिंग टंगे हुए है रिंग में --

यहाँ पर एक पार्लर है।